शादी में उन्हें सफेद कलर की शर्ते पहनी हुई है।

यहां पर बहोत सारे प्लास्टिक के स्टूल दिखाई दे रहे हैं।

पीछे की तरफ कांच बे एक स्टील का गेट दिखाई दे रहा है।

कुछ फल लखे है जिनमे पपीता है तरबूज है मोसंमी है सेब है।

और वो आगे की तरफ बहोत सारे खाने के कुरकुरे लटके हुए हैं।

यहां पर एक सीमेंट की फर्श पड़ा हुआ है जिसके ऊपर लाल रंग की बहुत सारी कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

और ऊपर की तरफ पीले कलर के फूल नीचे की ओर लटके हुए हैं।

एक बैनर लगा हुआ है अंदर की तरफ एक मोटरसाइकिल मिनी मेट्रो रखी हुई दिखाई दे रही है।

ऊपर की तरफ चेकदार एक छत है जो सफेद कलर की है।

वे कुछ कुर्सियों पे सफेद रंग का कपड़ा लटका हुआ है।

यहां पे कुछ कपड़े लटके हुए हैं जिनका कलर पीला और ऑरेंज है।

यहां बहोत सारी रंग बिरंगी चीजें कांच के बॉक्स में रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

और एक आदमी बैग टांगे कुछ कर रहा है जिसने सफेद कलर की पैंट पहनी है।

यहां पे एक बोर्ड हुआ है जिसके ऊपर हिंदी में शिवगंगा कन्फेक्शनरी लिखा हुआ है।

पीछे की तरफ एक सफेद कलर का वे रेड कलर का चैनल दिखाई दे रहा है।

ऊपर की तरफ एक ब्लैक कलर का पंखा दिखाई दे रहा है।

दीवाल पर एक भगत सिंह का पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ एक हले कलर की चटाई दिखाई दे रही है।

और यहां पे कुछ आदमी बैठे हुए हैं कुछ आदमियों ने टोपी ओढ रखी है।

और यहाँ पे डी_जे लगा हुआ है जिसके ऊपर रंग बिरंगी लाइटे लगी हुई है।

पीछे की तरफ दो पोस्टर लगी हुई हैं जिनके ऊपर कुछ बना हुआ है।

और उधर की तरफ लड़के बैठे हुए दिखाई दे रही हैं जिनकी सब के मुंह ब्लर हैं।

एक माताजी की और दो मूर्ति और एक मूर्ति हनुमान जी की--

यहां पे बहोत सारे आदमियों ने रंग बिरंगे कपड़े पेहने हैं।

इनमें कुछ नीचे की तरफ गाड़ियों के पार्ट्स पे एक टायर रखा हुआ है।

और वो यो पानी के अंदर है पीछे की तरफ बहुत सारे आदमी लोग उठते दिखाई दे रहे हैं।

नीचे की तरफ बोर्ड पे विभिन्न विभिन्न रंगों की टी शर्टे लटकी हुई दिखाई दे रही हैं।

की तरफ एक आदमी जाते हुए दिखाई दे रहा है।

यहां पर नीचे मिट्टी में घास का एक मैदान दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत सारे बच्चे हैं और दो आगे की तरफ आदमी और एक औरत खड़ी है औरत ने हाथ में हरे एक कलर झंडा ले रखा है।

नीचे की तरफ नोकदार कुछ प्लास्टिक की चीजें रखी हुई हैं जो विभिन्न विभिन्न रंगों की है।

यहां पर दो बॉक्स बने हुए हैं जो ऊपर की तरफ बहोत सारी दारू रखी हुई है।

और उसके ऊपर बहोत छोटे-छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

जो प्लास्टिक की है जिनके कलर रेड ग्रीन पीला और नीला है।

एक हरे रंग की टीन की झोपड़ी दिखाई दे रही है पीछे की तरफ और घर दिखाई दे रहे हैं।